और यहां पे मै देख पा रही हु की एक गौशाला बनी हुई है यहां पे और जिसके अंदर एक बड़ी गाय है और एक छोटी छोटा उसका बच्चा बंधा हुआ है जमीन पे खड़े है ये लोग -----